बड़े-बड़े रंग के बड़े बहोत सारे पेड़ भी लगे है।

यहाँ पे बहोत छोटे-छोटे इठे पड़े हुए है जो कि रंग-बिरंगी भुरे हरे गुलाबी पिले ल लाल--

और यहाँ पे आसमान जो की स्लेटी और सफ़ेद मे है।

ओ ये जो की हैंगर मे टंगे हुई है बहुत सारे सोफे और बहोत सारी बड़ी - बड़ी --

मेजे है यहाँ पे सिलेठी रंग के भूरे रंग के सोफे हैं।

पेड़ लगे हुए है हरे रंग के और ये दिवार जो की आसमानी रंग की है।

आसमान का रंग सुनीला और स्लेटी रंग मे है और यहाँ पे बहोत सारे लोहे के डं --

और यहाँ पर मेहरून रंग के बॉर्डर भी है।

जैसा की मे देख पा रही हूँ यहाँ पे आ ऑटो केयर लिखा हुआ है नीले रंग मे और भूरे रंग मे बोर्ड है दीवाले जो कि भूरे रंग की है।

जमीन का रंग भूरा और स्लेटी है।

हरे-हरे रंग के बहोत सारे पेड़ है यहाँ पे एक पहाड़ बना हुआ है बहोत सारे पत्थर है यहाँ पर--

जैसा की मे देख पा रही हूँ यहाँ पर एक गुफा है जो कि ईट की है।

जो की फोटो खिंच रहे है गुफा मे घुसते हुए यहाँ पे बोहोत सारी घासे --

जैसा की मे देख पा रही हूँ यहाँ पर एक न्यू कार है जिसमे लाल रंग का एक पट्टा भी चढ़ा गया है।